एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ हैं जो पिंक कलर नीले रंग का हैं अगल-बगल देवालें हैं सफेद रंग की नीचे साइड पर चैनल गेट लगा हुआ हैं।

सामने साइड पर पोस्टर लगा है जो कत्थे रंग का और का पीले रंग की है।